वहाँ पास मे पेड़ों की पत्तियाँ दिखाई दे रही हैंसामने नीला और सफेद कलर दिख रहा हैलाल कलर भी दिखाई दे रही हैपेड़ लगे हुए हैं बहोत सारे।

ये एक अ ग्राउंड है। जिसमें कुछ बच्चे हैं और ग्राउंड में हरी घास लगी हुई है। सामने एक मकान बना हुआ है साइड में--

और यहाँ पे कुछ प्रोग्राम चल रहा है टेंट लगा हुआ है टेंट के नीचे बहुत सारे इन्सान खड़े हुए है।

यह एक बोहोत बड़ी नदी हैं और नदी में एक हांथी है उसको नेहला रहे हैं।

हाथी के सर पे तिलक लगा हुआ हैं लाल कलर के उसके दांत दिखाय दे रहे हैं सफ़ेद और हाथी के ऊपर एक डंडा लेके एक इंसान खड़ा हुआ हैं। ऊपर के साईड में लोहे का ब्रिज बना हुआ है।

और सामने कुछ बिल्डिंग दिख रही है जिसके पास में पेड़ लगे हुए हैं लोहे की रेलिंग लगी हुयी है ऑफिस में बहुत सारे इंसान खड़े हुए हैं।

और लाईट के तार यहाँ पे और सामने कुछ पेड़ की कुछ पत्तिया भी दिखाई दे रही है | ऊपर आसमान दिख रहा है।